पारा हम ते एक लाल रंगा कु टेम्पु दिखेण लग्युं ओर पोर हम ते घनि झाड़ी अर घना डाला अर हम ते कई खम्बा दिखेण जुं का तार हम ते यथें वथें जायां दिखेण लग्यां।

चित्र मा हम देखि सक्दु कि हम ते एक स्कूल का बच्चान दिखेण लग्यां जुं का लाल रंगा का पोशाका पैनि वैका अगाड़ी हम ते टेबल पर उंका कागज कु कुछ सुन्दर आकर्ति बणाईं दिखेणी।

दिखेण लग्यां कुई रंगा कनु पिछाड़ी हम ते काला रंग कु बड़ु गेटा दिखेण लग्युं एक दुई चार गमला भीन रख्यां दिखेण लग्यां।

जै का लाल रंगा कि ड्रेसा पैनि एक नीला रंगा की साड़ी पैनि मैडम हम ते खड़ी होईं दिखेण लगीं ओर पोर हम ते सफ़ेद रंगा दिखेणु दीवारों पर।

एक सिस्टर हम ते खड़ी होईं दिखेण लगीं जै का सफ़ेद रंगा का कपड़ान पैन्या एक नीला रंगा कु दराजु हम ते आधा खुलयूं दिखेणु ओर पोर हम ते जाली वाली खिड़कीन दिखेण लगीं।